बहुत अच्छा से यह बंदोबस्त किए हुए हैं।

बहुत सारे कैंडिडेट इसको ज्वाइन कर सकते हैं।

और इस स्पेस बहुत ज्यादा है।

मार्केट में एरिया कम बचा है आने जाने के लिए।

और बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं।

यह एक लाइब्रेरी का फोटो है।

जिसमें काफी सारे स्टूडेंट पढ़ रहे है।

लाइब्रेरी को मेंटेन बहुत अच्छे से किया गया है।

देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है।

इसमें काफी सारे ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है।

जिसमें जिम की काफी सामानें रखी हुई हैं।

जिम का मेंटेनेंस काफी अच्छे से किया गया है।

और यहाँ पर फ्राइज़ यह सब भी मिलता है।

जोकि बाजार इंडिया का शोरूम है।

यह मछली वाले का शॉप है।

और बहुत प्रकार से मछलियां हैं।

बार लाइट ये सब सब लगी हुई हैं।

यहाँ पर नाईट के लिए लाइट भी लगाया गया है।

यह किसी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज है।

फोटोज बैलून्स बैनर सब कुछ लगे हुए हैं।